इस चित्र में हम देख पा रहे हैं कि एक भवन की सजावट की गई है और स्टेज बना हुआ है।

और रबड़ के पाइप पड़े हुए हैं और बहोत सारे लोग खड़े हुए हैं।

इस चित्र मे हम देख पा रहे हैं की एक लाल रंगो की बिल्डिंग है जिसके फ्लोर बने हुए हैं।

इस चित्र मे हम देख पा रहे हैं की एक कार पड़ी हुई है। कार के सामने की डिक्की खुली हुई है और एक आदमी के हाथ में --

और बोहोत सारे लोग खड़े हुए हैं और एक ऑटो जा रहा है।

बोहोत सारे लोग बैठे हुए हैं और उसके स उनके सामने बोर्ड पर कुछ-कुछ लिखा गया है।

और एक आदमी उसके सामने खड़ा हुआ है और बोहोत सारे यंत्र रखे हुए हैं।

इस चित्र मे हम देख पा रहे हैं की एक कमान बना हुआ है और एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है जिसपर --

लोग बैठे हुए है बत अ स्त्री और पुरुष बैठे हुए है और उसके सामने भगवन की तस्वीर पड़ी हुई है।

पहली बेंच पर एक अ बच्चा बैठा हुआ है और उसके सामने बोतल है पुस्तक पड़ी हुई है और टीचर के रूप में एक आदमी खड़ा हुआ है।

इस चित्र में हम देख पा रहे हैं कि एक गोल सा बना हुआ है जिसमें पानी है और यह उसके बीच में दो --

इस चित्र में हम देख पा रहे हैं कि यह एक बाग है। बाग़ में बड़े से नीले रंग का बेंच पड़ा हुआ है। झाड़ पेड़-पौधे घास दिखाई पड़ रहा है हर जगह।

इस चित्र में हम देख पा रहे हैं कि एक आदमी अपने गले में लाल रंग का ईयरफ़ोन डाल कर हाथ में वाटर बॉटल पकड़कर अ --